गोदाम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर --

यह रेलवे की पटरियां दिखाई दे रही हैं। प्लेटफार्म पर कुछ लोग ट्रैन का इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं।